यहा सिर्फ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है यह एक पहाड़ी इलाका है।

यहा पर एक लोहे का बड़ा गेट लगा हुआ है आपको कुछ बोरी मै समान भी दिखाई दे रहे है यहा मेदान पड़ा हुआ है आपको यहा पर और बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक प्ले ग्राउंड है वॉलीबॉल का ग्राउंड है अभी रात का समय है लाइटें दिख रही है लाइटें जल रही है जाली लोहे की जाली लगी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा भवन है यह आपको बहुत बड़ा भवन दिखाई दे रहा है रात का समय है लाइट जल रही हैं कुछ बक्से भी रखे हुए हैं।

बहुत बड़ा ग्राउंड है यहां पर आपको बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और लोहे की जालियां लगी हुई है।

एक प्लेग्राउंड है यह बहुत बड़ा मैदान है यहां पर कुछ लोग खेल रहे हैं ।